यह कपड़ा दुकान है। यहाँ पे हम लोग कपड़ा खरीदने जाते हैं।

मंदिर जब से हम लोग जा रहे हैं। हम लोगों को मन में शांति मिलता है।

पहाड़ पर हम लोग जाते हैं तो घूमने में बोहुत ही अच्छा मेहसूस होता है और हमलोग को ए जगह बोहुत ही अच्छा लगता है।